और पीछे बादल काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है।

इसमें काफी सारे धागे नजर आ रहे हैं।

यह एक टोरी रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है।

और इसमें काफी सारे खिड़कियां नजर आ रही है जिसमें डिजाइन बनाया गया है।